यहां पे एक बन रहा है पिज़्ज़ा बन रहा है। बहोत अच्छा-अच्छा पिज़्ज़ा मिलता है। यहां पर एक मे रखा गया कलछुल है।

पीला कलर का है। पूरा पुलिस लाइट लगा हुआ है।

वही रख वही रख --